ये एक नदी है। नदी के किनारे सब लोग छठ पूजोन के लिए आए हुए हैं। यहाँं पर बोहोत भीर है।

सारी महिलाएं पुरषे एक जगह होके छठ पूजा में मगन है दिख रहा है ठंडी का मौसम है और पीछे मैदान में भी लोग खड़े हैं।

एक लड़की डांस परफॉर्म कर रही है।

यहां पे कुछ औरतें सफेद साड़ी पहन के कृष्णा और राधा की सजाई हुई मूर्ति पर दिया लगा रहे हैं और उन्हें पूंज रहे हैं।

ये एक जिम ट्रेनिंग सेण्टर है यहाँ पे लोग आके जिम बन करते हैं या बॉडी बनाते हैं | फिटनेस अं स्टूडियो है ये |

और सड़क के सामने बीचों बीच एक गार्डन एरिया है ।

ये एक स्टेज है। यहाँ पर स्टेज में बैलून से सजावट किया गया है और सामने लिखा है हैप्पी बर्डे ।